और यहाँ पे एक अ अ मोटर साइकिल से जा रहे हैं और वहाँ पे एक सिटी रिक्शा से और यहाँ पे कीचड़ है पानी है बहोत ही यहाँ पे कीचड़ पानी है जोकि देखने में बहोत ही अच्छे हैं।

और साइड में ये दीवाल जो है पूरा हरा-भरा दिखाई पड़ रहा है जो कि देखने में बहोत ही काफी सुंदर लग रहे हैं बहोत ही अच्छे दीवाल बहोत ही बढ़िया --

यहाँ पे आप देख सकते हैं शादी विवाह का खेल चल रहा है इसलिए यहां पे बहुत ही अच्छे से सजाई गई है जो की देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और यहां पर रेड कलर की चटाई बिछाई गई है।

यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहोत बड़ा नदी है जोकि देखने में बहोत ही अच्छा लगता है और यहाँ पे एक बड़ा नाव है एक छोटा नाव और बड़ा नाव पे यहाँ पे एक घर बनाये गए हैं तो बाहर न जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं।

और बहोत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है वाइट कलर का नाव है बहोत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और पानी बहोत है इसमें।

और सभी अलग-अलग ड्रेस पहने हुए हैं दिखने में बहोत ही अच्छा लगता है काफी सुंदर है यह स्टेज बहोत ही --